इनकी पोशाख लाल रंग की हैं और उनकी कुर्सी भी लाल रंग की हैं।

नाव में लोग बैठे है कुछ तट पर खड़े--

ये एक दो मंजिल की इमारत बनी हुई है यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है दूसरा बैठा हुआ है नीचे सीढ़ियां भी है जिससे चढ़ कर ऊपर जाया जा रहा है और आदमी के टी-शर्ट लाल रंग की --

यह मंदिर के अंदर की तस्वीर है जहाँ भगवान की मूर्ति रखी हुई है जो मूर्ति नारंगी रंग की है। बगल में एक --

और तीन माले का विद्यालय है | कुछ लोग साइकिल लेकर खड़े हैं और कुछ लोग काम कर रहे हैं | एक मैदान भी है।